चारो पटी से बाउंड्री दीवार है और बगल में खेती की गयी है।

रिसेप्शन होटल के अंदर टेबुल लगा हुआ है लाल रंग का चादर से ओढ़ाया गया है सब टेबुल पर ग्लास रखा हुआ है और एक बाइक की चाभी रखी हुई है|